बेंच पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं बेंच पर बेग भी रखे हुए हैं बेग पर सबकी बुक खुली हुई रखी हुई है।

इसमें एक बिल्डिंग है जो कि जिसमें काम चल रहा है जिसमें बहुत सारी लकड़ियाँ लगी हुई हैं सामने एक पोस्टर लगा हुआ है।

ये गाड़ियाँ काले रंग की हैं एक गाड़ी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि काले रंग के शर्ट पहने हुए है सामने एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है एक बोर्ड लगा हुआ है एक गेट भी लगा हुआ है।